यहाँ हमें एक तालाब नजर आ रहा है जिसके दोनों ओर किनारा नजर आ रहा है किनारो पर काफी--

जो की तुलसीपुर बलरामपुर हावय ये ह देखने से यह काफी सूंदर हरा भरा नजर आ रहा है।

काफी ही सुंदर गुब्बारों से सजावट व लाइटो से सजावट की गयी है बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए है।

आजु -बाजु पेड़ नजर आ रहे है कई घर बने हुए नजर आ रहे हैं |

जिससे एक काम किया जा रहा है एक बड़ा सा गद्दा किया गया है।

यहाँ हमें एक सूखा -सा पहाड़ नजर आ रहा है जिसके आजु -बाजु छोटॆ -छोटे पेड़ लगे हुए हैं |